ये एक शॉप है वहां पे बहोत सारी चीजें बेचते हैं जैसे बॉल्स दिख रही है मुझे और वहां पे वेट मशीन है जिसपे एक--

कढ़ाई रखी गई है रेड कलर की व वहां नीचे बहुत सारे जार हैं जिनमें कोई समान लग रहा है।

वहां साइड में जिसको दीवार दिया गया है उसके--

ऊपर इसमें सत आं ऊपर इसमें छत वत बनाया गया है।

के लिए इस्तेमाल होते हैं रेड कलर की टाइल है वहां पे।

बाईकों पे आदमी आ रहे हैं और वहाँ पे बोहोत सारे लोग भी जमा हैं।

और कुछ बंदों के हाथ में कुछ पोस्टर जैसा दिख रहा है।

ये एक पार्क जो है बंद की गई है इसमें ब्लू कलर की ग्रिल लगाई गई है।

ये एक सलून है जिसका नाम सिटी सेंटर सलून है।

एक फोटो भी लगी हुई है पी_एम की है ये और यहां स्विच बॉक्स भी लगा हुआ है।

ये एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम बर्गर लैंड है।

वी_वी_ए बीकॉम पी_यू_सी इसके बाहर एक बंदा दिख रहा है जो कुछ फोटो जैसा ले रहा है।

ये एक स्कूल की तस्वीर है एक क्लास रूम है ये।

और यहां दीवार पे कुछ स्विच बाॅक्स दिख रहा है यहां साइड में भी कुछ ट्रांसफार्मर जैसा लगा हुआ है।

और यहां पे इतने अच्छे से पानी बह रहा है नीचे जैसे दूध लग रहा है।

जिस पे हाउस बोटो की तस्वीर दिख रही है और इस पे कांटेक्ट नंबर भी दिया हुआ है।

ये एक सड़क की फोटो है जहां पे बहोत सारे लोग एक साथ चल रहे हैं।